यहां पर एक स्कूल दिखाई दे रहा है जिसमे--

उसके जस्ट सामने ही एक बिल्डिंग बनता दिखाई दे रहा है।